क्रेन की तस्वीर हैं।

तरह का फ्रूट पड़ा है।

पहनी हुई है लड़के को काफी पसीना भी--

इस कप में कॉफी डाली हुई है।

का कलर पिंक एंड व्हाइट है।

के आसपास काफी वृक्ष लगे--

ये पार्क की तस्वीर है।

ये कुछ मछलियों के टुकड़े करके बैठा है।